और काफी पुरानी जगह लग रही है। पेड़ भी हैं काफी झाड़ियां भी हैं यहाँ पर।

जैसा कि हम देख रहे है प्राचीन काल में ये बनाये हुए हैं।

और ये अच्छा लग रहा है देखने में और लोग भी बोहोत देख रहे हैं और फ़ोटोज़ भी खींच रहे --

ताकि इसी में कोई घुस ना पाए और काफी सपोर्ट के लिए लगाए --

ओ बैंक काफी बड़ी है। दो बैंक काफी बड़ी दिखाइ दे रही है।

जैसा कि मैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं एस.बी.आई. बैंक । इसके दो गेट दिखाई दे रहे हैं हमे।

अम्मम्म बैरीएर भी लग रहे हैं। मुझे पुलिस वाले गाड़ी अन्दर जाने नहीं दे रहे हैं।

जैसा की हम देख रहे हैं ये हमें कार दिखाई दे रही है। इसका चौराहा --

नाम्य पढ़ा हुआ है। गाय काले कलर की है। काफी अच्छी है। साफ चमक रही है।

पिकल लड़कियों ने किया है पतंजलि टेस्टी नमकीन ढा --

यहाँ साफ सफाई नहीं है और स्कूल आगे है। इसकी साफ सफाई से हमें काफी लाभ मिलता है।

आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और नदी का काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है।

काफी अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें कई कुर्सिया बड़ी हुई हैं।

और यहाँ पोधे भी खड़े हुए है और --

जब की ये अंग्रजो के ज़माने का बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें।

बेल होती है जिसकी हम लोहे पर यह काफ़ी अच्छा है जिनकी कटिंग होने के बाद काफी अच्छे से खूबसूरत दिखती है। --

इसमें जो भी प्रोब्लम नहीं होती है और काफी बड़ी गैरेज दिखाई दे रही हैं जिसमे गाड़ी खड़ी रहती है रात बिरात।

यह कही जाते है तो इसमें गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं। इससे चोरी नहीं होती।